इस फोटो में मशीन नजर आ रही है इस फोटो में लाइट नजर आ रही--

इस फोटो में गाड़ी नजर आ रही--

इस फोटो में राधा नजर आ रही है इस फोटो में माला नजर आ रही--